ये एक बहोत ही बड़ा ढाबा है जिसमें बोर्ड लगा हुआ है अपना ढाबा--

बाहर एंट्रेंस में बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं उसमें भी फूल--

बहोत ही सफाई के साथ इस मिठाइयों को बनाया गया--

सफेद रंग की इसमें चादर रखी हुईं हैं।

और दो डमी हैं उनको साड़ियां पहनाई हुई हैं ये बहोत ही सुंदर लग रही हैं ड्रेस बहोत ही अच्छी हैं।

टायर रखे हुए हैं अलग अलग तरह के टायर हैं।

और पीछे एक बहुत ही बड़ा पेड़ है पेड़ के नीचे शिवलिंग बना हुआ है पूजा का बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

ये एक बच्चों के खेलने का रूम है जो कि स्कूल --

सोफे जो भी बहुत ही बड़े-बड़े सोफे है पीछे बजरी रखी हुई है।

ये एक स्कूल है स्कूल में--

ऑफिस में कोई भी नहीं बैठा हुआ चेयर दिख रही है टेबल दिख रहे हैं।